यहाँ सामने की ओर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे कपड़े भी टंगे हुए हैं। सामने की ओर एक जिम का बोर्ड भी दिखाई दे रहा हैं। ऊपर कि ओर आसमान दिख रहा है।

यहाँ सामने की और बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है जहाँ उपर की योर एक कोर्ट का प्लस दिखाई दे रहा है।

यहाँ सामने की ओर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जहाँ सामने --

जहाँ छोटे-छोटे बच्चे उस कार में बैठे हूएं हैं। साम --

यह सामने की ओर एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है। जहाँ दुकान में अंदर है की ओर अलग-अलग कलर के फूल दिखाई दे --

इहे जहाँ सामने व्यक्ति भी खड़े हुए है।